अलग अलग प्रकार की सब्जियां है यहां पे एक आदमी को दिखाया गया जो सब्जियों को बेच रहा है।

बाइक भी लगा हुआ है यहां पे और सब्जियों के ऊपर हरि त्रिपालों की छत लगाई हुई है।

जिनका उपयोग गैस सिलेंडर को बनाने के लिए होता है और--

डिस्प्ले करके रखे हो यहां पे और लोगों को दिखाया गया है मेरे को भी दिख रहे है यहां पे जिम --

यहां पर एक शॉप को दिखाया गया है जिसके ओनर का नाम है एम_एस है जो सर्विस कार्ड --

टेंपो ग्रीन कलर ग्रीन कलर का है और इसको बीच रोड में खड़ा करके रखा है टेंपो खराब पड़ गया है।

बंपर खोल के ऊपर बकेट के खोल के आकार की सर्विस करवा रहा है जो कार की बैटरी को चेक कर रहा है और उसके हाथ में एक --

यहां पे दो बिल्डिंग को दिखाया गया है जहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और यहां पर--

नई ऑटो परचेज करके मालिक आटो के साथ फोटो ले रहे--

यहां पर एक रेस्टोरेंट को दिखाया गया है जिसमें कर्तव्य नाम का पोस्टर लगा हुआ है यहां पे।

और इनको छाया में रखा गया है और इनके आस पास--

देखिए दूसरी साइड एक और आदमी जो यहां पे वॉटरफॉल के पास फोटो ले रहा है।

और अभी रात का समय है और पीछे बोहोत सारी गाड़िया लगी हुईं हैं।

बहोत बड़ा वॉटरफॉल है और उसी के राइट साइड कोई छोटा सा वॉटरफॉल है और आस पास बहोत सारे पेड़ पौधे हैं।

उनके ऊपर एक लोहे की चादर की छत बनाई हुई हैं जहाँ पे मोटर को रखा गया है।

ये लाल कलर के पत्रों से बनायी हुई है और एक आदमी यहां फोटो ले रहा--

यहां पर एक मंदिल को दिखाया गया है जहां पे बहोत सारे लोग दर्शन करने आए हुए हैं और एक--

जंगलों के बीच से जाता है और आसपास बहुत सारी घने पेड़ है बीच में--